उसके बाद लाल पीला कथक ब्लू सब है --

और उसके बाद हो गया इसमें जींस पैंट सब मिल सकता है ऊपर बॉल भी बर रहा है।

यहाँ पे गड़ी के दुकान है चार चक्का के चार चक्का के चक्का खुला हुआ है गड़ी सर्विस हो रहा है।

बाद बोर्ड है दू गो लगा हुआ उसमें प्लक भी लगा हुआ है।

उनका भी लगा हुआ है और उसके पास चेयर भी लगा हुआ है।

और उसके बाद गुलदस्ता भी मिल रहा है उसके बाद काउंटर भी लगा हुआ है और उसके बाद दीवाल भी है।

और उसको बाद थैली भी रखा हुआ है इसमें और उसको बाद एक दीवाल भी है और उसको बाद किलो भी त --

और उसके बाद गड़ी भी है गलंबर भी है टीवीएस भी है और यहाँ पे --

यहां पे चउक हैं और बाइक भी बहुत सारे लगा हुआ हैं टेम्पुल भी लगा हुआ हैं पान छ गो--

के बाद साइड में एक मोल भी है जैसे कि ढाला भी लगा हुआ है यहाँ पे भैंसी भी बाँधा हुआ है।

यहां पे पेट्रोल पंप है और बहोत सारे बाइक भी लगा हुआ है अ पेट्रोल टंकर में भरने के लिए पेट्रोल टंकर भी एक है।

यहां पे मंदिर है और उसको बस पीला कलर के पेंट मारा हुआ है रेलिंग भी लगा हुआ है स्टील का--

और रेलिंग भी ऊपर भी लग रहा है अभी काम अधूरा है उसको बाद ग्रील भी लगा हुआ है और खिड़की भी लगा हुआ है।

यहां पे गमला लगा हुआ है इसमें जाली भी लगा हुआ है और बहोत सारे फूल है बिकने के लिए रखाया हुआ है।

जैसे कि कनाती हो गया छज्जे पर रखा हुआ है और गमला में फूल हो गया--

और साइड में भी माइक भी लगा हुआ है मिक्सर भी रखा हुआ है बजाने के लिए मूर्ति भी रखा हुआ--

और टेंपुल में माला भी लगा हुआ है एक हरा कलर का है।

और थाली भी लगा हुआ है जैसे कि फूलहा गिलास हो गया फूलहा छिपा हो गया--

और आरती भी दिखा रहे हैं और माला भी चढ़ा हुआ है और दीवाल भी है और लाइट भी जल रहा है।

ये दुकान है यहाँ पे पेन भी मिल लहा है बुक भी मिल लहा है टिप-टुपुआ कलम भी मिल लहा है और पेंटिंग के भी समान मिल लहा है।